यहां का नजारा कितना अच्छा लग रहा है आप आ के देख सकते है।

लोग सब अपने मनोकामना लेके उसका मनोकामना पूरा हो जाता है। परसादी चढ़ा के एक लोग गए एक लोग गए हैं।

देखिये कितना अच्छा केश छाटता हैं --

ये देखिए हमारे बेगुसराय के इंदा है ये इंदा में देखिए कितना अच्छा है ये ये फूल से सजाया गया हैं एक बोल भी बड़ा गया हैं।

हमारे बेगुसराय के नदी में ये देखिये कितना बड़ा ये पनिया जहाज पे ये लोग सब बैठ के सफर कर रहे है।

सारे बच्चे अपने-अपने ची बनाने में व्यस्त है।

ये आप देख सकते है। हमारे बेगुसराय में ये किराना दुकान खुला है ये किराणा दुकान मे हर चीज मिलता है।